बहुत अच्छा पेड़ है उसका पीछे कुआँ भी है उसका पीछे पेड़ भी है बहुत अच्छा पेड़ है ।

बहुत सुंदर आदमी लाइन में भी लगा हुआ है।

बस भी है एक आदमी आ रहे हैं हेलमेट पहन के बहुत सुंदर दिख रहा है कहाँ बहुत अच्छा जगह भी है ।

बहुत अच्छा घर बना रहा है मिस्त्री सब।